हवाई अड्डा है पचास हजार हैब हरा-हरा पेड़-पोधा बहुत अच्छा लगा हुआ है रोड में टाइल्स बैठा हुआ है। पेड़ खड़ा है। हवाई जहाज नीचे उतरा हुआ है। बच्चा सा जा रहा है।

उधर उ उजला कलर का रूम है नीचे पेड़-पौधा है गमला में भगवान का फोटो है उजला कलर का रूम है कलाकार --